मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योंहार मना रहा है
सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की बहुतबहुत शुभकामनाएँ
रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है
यह त्यौहार सदियों से सामाजिक सौहार्द का भी एक बड़ा उदाहरण रहा है
देश के इतिहास में अनेक ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें एक रक्षा सूत्र ने दो अलगअलग राज्यों या धर्मों से जुड़े लोगों को विश्वास की डोर से जोड़ दिया था
अभी कुछ ही दिन बाद जन्माष्टमी का पर्व भी आने वाला है
पूरा वातावरण हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की गोविन्दागोविन्दा की जयघोष से गूँजने वाला है
भगवान कृष्ण के रंग में रंगकर झूमने का सहज आनन्द अलग ही होता है
देश के कई हिस्सों में और विशेषकर महाराष्ट्र में दहीहाँडी की तैयारियाँ भी हमारे युवा कर रहे होंगे
सभी देशवासियों को रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ
महोदय नमस्कारः
अहं चिन्मयी बेंगलुरुनगरे विजयभारतीविद्यालये दशमकक्ष्यायां पठामि
महोदय अद्य संस्कृतदिनमस्ति
संस्कृतंभाषां सरला इति सर्वे वदन्ति
संस्कृतं भाषा वयमत्र वहवहअत्र सम्भाषणमअपि कुर्मः
अतः संस्कृतस्य महत्व विषये भवतः गह अभिप्रायः इति रुपयावदतु
भगिनी चिन्मयि
प्रश्नं पृष्टवती
बहूत्तमम् बहूत्तमम्
अहं भवत्या अभिनन्दनं करोमि
सप्ताह निमित्तं देशवासिनां
सर्वेषां कृते मम हार्दिकशुभकामना
मैं बेटी चिन्मयी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने यह विषय उठाया
साथियो रक्षाबन्धन के अलावा श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है
मैं उन सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूँ जो इस महानधरोहर को सह्ज़ने सँवारने और जन सामान्य तक पहुँचाने में जुटे हुए हैं
हर भाषा का अपना माहात्म्य होता है भारत इस बात का गर्व करता है कि तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं किवेदकाल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचारप्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है
जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भण्डार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है
चाहे वह विज्ञान हो या तंत्रज्ञान हो कृषि हो या स्वास्थ्य हो एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर होगणित हो या मैनेजमेंट हो अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मन्त्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है
आप सबको जानकार हर्ष होगा कि कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के मट्टूर गाँव के निवासी आज भी बातचीत के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं
आपको एक बात जानकर के आश्चर्य होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिती संभव है
दो हज़ार धातु 200 प्रत्यय यानी सफिक्स 22 उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और समाज से अनगिनत शब्दों की रचना संभव है और इसलिए किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विषय को एक्युरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है और संस्कृत भाषा की एक विशेषता रही है आज भी हम कभी अपनी बात को ताकतवर बनाने के लिए अंग्रेजी कोटेशंस का उपयोग करते हैं
कभी शेरशायरी का उपयोग करते हैं लेकिन जो लोग संस्कृत शुभाषितों से परिचित हैं उन्हें पता है कि बहुत ही कम शब्दों में इतना सटीक बयान संस्कृत शुभाषितों से होता है और दूसरा वो हमारी धरती से हमारी परम्परा से जुड़े हुए होने के कारण समझना भी बहुत आसान होता है
जैसे जीवन में गुरु का महत्व समझाने के लिए कहा गया है
एकमपि अक्षरमस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत्
पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा ह्यनृणी भवेत्
अर्थात कोई गुरु अपने शिष्य को एक भी अक्षर का ज्ञान देता है तो पूरी पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु या धन नहीं जिससे शिष्य अपने गुरु का वह ऋण उतार सके
आने वाले शिक्षक दिवस को हम सभी इसी भाव के साथ मनाएँ
ज्ञान और गुरु अतुल्य है अमूल्य है अनमोल है
माँ के अतिरिक्त शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों के विचारों को सही दिशा देने का दायित्व उठाते हैं और जिसका सर्वाधिक प्रभाव भी जीवन भर नज़र आता है
शिक्षक दिवस के मौक़े पर महान चिन्तक और देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम हमेशा याद करते हैं
उनकी जन्म जयन्ती को ही पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है
मैं देश के सभी शिक्षकों को आने वाले शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ साथ ही विज्ञान शिक्षा और छात्रों के प्रति आपके समर्पण भाव का अभिनन्दन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो कठिन परिश्रम करने वाले यह हमारे किसानों के लिए मानसून नयी उम्मीदें लेकर आता है
भीषण गर्मी से झुलसते पेड़पौधे सूखे जलाशयोँ को राहत देता है लेकिन कभीकभी यह अतिवृष्टि और विनाशकारी बाढ़ भी लाता है
प्रकृति की ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ जगहों में दूसरी जगहों से ज्यादा बारिश हुई
अभी हम सब लोगों ने देखा
केरल में भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है
आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है
हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को गँवाया है जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मैं शोकसंतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सवासौ करोड़ भारतीय दुःख की इस घड़ी में आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं
मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ जो जाएँ
मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के लोगों के जज़्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ्र ही फिर से उठ खड़ा होगा
आपदाएँ अपने पीछे जिस प्रकार की बर्बादी छोड़ जाती हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं लेकिन आपदाओं के समय मानवता के भी दर्शन हमें देखने को मिलते हैं
कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई अपनेअपने स्तर पर कुछनकुछ कर रहा है ताकि जहाँ भी आपत्ति आई हो चाहे केरल हो या हिंदुस्तान के और ज़िले हों और इलाके हो जनजीवन फिर से सामान्य हो सके
सभी एजीई ग्रुप और हर कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग अपना योगदान दे रहे हैं
हर कोई सुनिश्चित करने में लगा है कि केरल के लोगों की मुसीबत कमसेकम की जा सके उनके दुःख को हम बाँटें
हम सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं
उन्होंने बाढ़ में फँसेलोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी
एयर फोर्स होNavy हो आर्मी हो बीएसएफ सीआईएसएफ रफ हर किसी ने राहत और बचाव अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है
मैं एनडीआरएफ के जांबाजों के कठिन परिश्रम का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ
संकट के इस क्षण में उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है
एनडीआरएफ की क्षमता उनके कमिटमेंट और त्वरित निर्णय करके परिस्थिति को सँभालने का प्रयास हर हिन्दुस्तानी के लिए एक नया श्रद्धा का केंद्र बन गया है
कल ही ओणम का पर्व था हम प्रार्थना करेंगे कि ओणम का पर्व देश को और ख़ासकर केरल को शक्ति दे ताकि वो इस आपदा से जल्द से जल्द उबरें और केरल की विकास यात्रा को अधिक गति मिले
एक बार फिर मैं सभी देशवासियों की ओर से केरल के लोगों को और देशभर के अन्य हिस्सों में जहाँजहाँ आपदा आई है विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा देश संकट की इस घड़ी में उनके साथ है
मेरे प्यारे देशवासियो इस बार मैं मन की बात के लिए आये सुझावों को देख रहा था
तब देशभर के लोगों ने जिस विषय पर सबसे अधिक लिखा वह विषय है हम सब के प्रिय श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी
गाज़ियाबाद से कीर्ति सोनीपत से स्वाति वत्स केरल से भाई प्रवीण पश्चिम बंगाल से डॉक्टर स्वप्न बैनर्जी बिहार के कटिहार से अखिलेश पाण्डे न जाने कितने अनगिनत लोगों ने नरेंद्र मोदी मोबाइल App पर और माइगोव पर लिखकर मुझे अटल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने का आग्रह किया है
16 अगस्त को जैसे ही देश और दुनिया ने अटल जी के निधन का समाचार सुना हर कोई शोक में डूब गया
एक ऐसे राष्ट्र नेता जिन्होंने 14 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था
एक प्रकार से गत् 10 वर्ष से वे सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर चले गए थे
ख़बरों में कहीं दिखाई नहीं देते थे सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आते थे
10 साल का अन्तराल बहुत बड़ा होता है लेकिन 16 अगस्त के बाद देश और दुनिया ने देखा कि हिन्दुस्तान के सामान्य मानवी मानवके मन में ये दस साल के कालखंड ने एक पल का भी अंतराल नहीं होने दिया
अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है
पिछले कई दिनों से अटल जी के उत्तम से उत्तम पहलू देश के सामने आ ही गए हैं
लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद संवेदनशील लेखक श्रेष्ठ वक्ता लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं
सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा लेकिन मैं आज अटल जी के विशाल व्यक्तित्व का एक और पहलू उसे सिर्फ स्पर्श करना चाहता हूँ और यह अटल जी ने भारत को जो पॉलिटिकल कल्चर दियापॉलिटिकल कल्चर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया उसको व्यवस्था के ढांचे में ढालने का प्रयास किया और जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला है
ये भी पक्का है
भारत हमेशा 91वें संशोधन अधिनियम त्वो थाउसेंड थ्री के लिए अटल जी का कृतज्ञ रहेगा
इस बदलाव ने भारत की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये
पहला ये कि राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा सीटों के 15 तक सीमित किया गया
दूसरा ये कि दलबदल विरोधी क़ानून के तहत तय सीमा एकतिहाई से बढ़ाकर दोतिहाई कर दी गयी
इसके साथ ही दलबदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किये गए
कई वर्षों तक भारत में भारी भरकम मंत्रिमंडल गठित करने की राजनीतिक संस्कृति ने ही बड़ेबड़े जम्बो मंत्रिमंडलकार्य के बँटवारे के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाते थे
अटल जी ने इसे बदल दिया
उनके इस कदम से पैसों और संसाधनों की बचत हुई
इसके साथ ही कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी हुई
यह अटल जी जैसे दीर्घदृष्टा ही थे जिन्होंने स्थिति को बदला और हमारी राजनीतिक संस्कृति में स्वस्थ परम्पराएं पनपी
अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे
उनके कार्यकाल में ही बजट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ
पहले अंग्रेजों की परम्परा के अनुसार शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि उस समय लन्दन में पार्लियामेंट शुरू होने का समय होता था
वर्ष 2001 में अटल जी ने बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया
एक और आज़ादी अटल जी के कार्यकाल में हीIndian फ्लैग कोड बनाया गया और 2002 में इसे अधिकारित कर दिया गया
इस कोड में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराना संभव हुआ
इसी के चलते अधिक से अधिक भारतीयों को अपना राष्ट्रध्वज फहराने का अवसर मिल पाया
इस तरह से उन्होंने हमारे प्राणप्रिय तिरंगे को जनसामान्य के क़रीब लाया
आपने देखा किस तरह अटल जी ने देश में चाहे चुनाव प्रक्रिया हो और जनप्रतिनिधियों से सम्बंधित जो विकार आए थेउनमें साहसिक कदम उठाकर बुनियादी सुधार किए
इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है
इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनीअपनी बात रख रहे हैं
ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी
मैं जरुर कहूँगा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परम्पराएं विकसित करना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी
उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सबकी ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों संसद की आजकल चर्चा जब होती है तो अक्सर रुकावट होहल्ला और गतिरोध के विषय में ही होती है लेकिन यदि कुछ अच्छा होता है तो उसकी चर्चा इतनी नहीं होती
अभी कुछ दिन पहले ही संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ है
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 118 और राज्यसभा की 74 रही
दलहित से ऊपर उठकर सभी सांसदों ने मानसून सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि लोकसभा ने 21 विधेयक और राज्यसभा ने 14 विधेयकों को पारित किया
संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा
इस सत्र में युवाओं और पिछड़े समुदायों को लाभ पहुँचाने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया
आप सबको पता है कि दशकों से एससीएसटी कमिशन की तरह ही ओबीसी कमिशन बनाने की माँग चली आ रही थी
पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार ओबीसी आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया
यह कदम सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे ले जाने वाला सिद्ध होगा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन विधेयक को भी पास करने का काम इस सत्र में हुआ
यह कानून एससी और एसटी समुदाय के हितों को और अधिक सुरक्षित करेगा
साथ ही यह अपराधियों को अत्याचार करने से रोकेगा और दलित समुदायों में विश्वास भरेगा
देश की नारी शक्ति के खिलाफ़ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता
बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सज़ा का प्रावधान किया है
दुष्कर्म के दोषियों को कमसेकम 10 वर्ष की सज़ा होगी वहीँ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर फाँसी की सज़ा होगी
कुछ दिन पहले आपने अख़बारों में पढ़ा होगा मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ़ दो महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग़ से रेप के दो दोषियों को फाँसी की सज़ा सुनाई है
इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ़ पाँच दिन की सुनवाई के बाद दोषियों को फाँसी की सज़ा दी
राजस्थान ने भी वहाँ की अदालतों ने भी ऐसे ही त्वरित निर्णय किये हैं
यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ़ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभायेगा
सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है
लोकसभा में ट्रिपल तलाक़ बिल को पारित कर दिया गया हालाँकि राज्यसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है
मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताक़त से साथ खड़ा है
जब हम देशहित में आगे बढ़ते हैं तो ग़रीबों पिछड़ों शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है
मानसून सत्र में इस बार सबने मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया है
मैं देश के सभी सांसदों को सार्वजनिक रूप से आज हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो इन दिनों करोड़ों देशवासियों का ध्यान जकार्ता में हो रहे एशियन गेम्स पर लगा हुआ है
हर दिन सुबह लोग सबसे पहले अख़बारों में टेलीविजन में समाचारों पर सोशल मीडिया पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने मेडल जीता है
एशियन गेम्स अभी भी चल रहे हैं
मैं देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ
उन खिलाड़ियों को भी मेरी बहुतबहुत शुभकामना है जिनकी स्पर्धाएँ अभी बाकी हैं
भारत के खिलाड़ी विशेषकर शूटिंग और रेस्टलिंग में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ही रहे हैं लेकिन हमारे खिलाड़ी उन खेलों में भी पदक ला रहे हैं जिनमें पहले हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है जैसे वुशु और रोइंग जैसे खेल ये सिर्फ़ पदक नहीं हैं प्रमाण हैं भारतीय खेल और खिलाड़ियों के आसमान छूते हौसलों और सपनों का
देश के लिए मेडल जीतने वालों में बढ़ी संख्या में हमारी बेटियाँ शामिल हैं और ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है यहाँ तक कि मेडल जीतने वाले युवा खिलाड़ियों में 1516 साल के हमारे युवा भी हैं
यह भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनमें से अधिकतर छोटे कस्बों और गाँव के रहने वाले हैं और इन लोगों ने कठिन परिश्रम से इस सफ़लता को अर्जित किया है
29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनायेंगे इस अवसर पर मैं सभी खेल प्रेमियों को शुभकामनाएँ देता हूँ साथ ही हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मैं देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वे ज़रूर खेलें और अपनी फिटनेस का ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ भारत ही संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करेगा
जब इंडिया फिट होगा तभी भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होगा
एक बार फिर मैं एशियन गेम्स में पदक विजेताओं को बधाई देता हूँ साथ ही बाकी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना करता हूँ
सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की भी बहुतबहुत शुभकामनाएँ
प्रधानमंत्री जी नमस्कार मैं कानपुर से भावना त्रिपाठी एक इंजीनियरिंग की छात्रा बात कर रही हूँ
प्रधानमंत्री जी पिछले मन की बात में आपने कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं से बात की थी और उससे पहले भी आपने डॉक्टरों से चार्टेड एकाउंटेंट्स से उनसे बातें करीं
मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आने वाले 15 सितम्बर को जो कि एक इंजिनियर्स Dayके तौर पर मनाया जाता है उस उपलक्ष्य में अगर आप हम जैसे इंजीनियरिंग के छात्रछात्राओं से कुछ बातें करें जिससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा और हमें बहुत खुशी होगी और आगे आने वाले दिनों में हम अपने देश के लिए कुछ करने का हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा धन्यवाद
नमस्ते भावना जी मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ
हम सभी ने ईंटपत्थरों से घरों और ईमारतों को बनते देखा है लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग बारहसौ साल पहले एक विशाल पहाड़ को जो कि सिर्फ सिंगल स्टोन वाला पहाड़ था उसे एक उत्कृष्ट विशाल और अद्भुत मंदिर का स्वरूप दे दिया गया शायद कल्पना करना मुश्किल होलेकिन ऐसा हुआ थाऔर वो मंदिर हैमहाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर
अगर कोई आपको बताए कि लगभग हज़ार वर्ष पूर्व ग्रैनाइट का 60 मीटर से भी लम्बा एक स्तंभ बनाया गया और उसके शिखर पर ग्रैनाइट का क़रीब 80 टन वज़निक एक शिलाखंड रखा गया तो क्या आप विश्वास करेंगे लेकिन तमिलनाडु के तंजावुर काबृहदेश्वर मंदिर वह स्थान है जहाँ स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग के इस अविश्वनीय मेल को देखा जा सकता है
गुजरात के पाटण में 11वीं शताब्दी की रानी की वाव देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है
भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है
भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुये जिन्होनें अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए हैं
महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचम्भित कर रहे हैं और वह थे भारत रत्न डॉ एम विश्वेश्वरय्या डीआर
कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बाँध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जनसामान्य लाभान्वित हो रहे हैं
देश के उस हिस्से में तो वह पूज्यनीय है हीं बाकी पूरा देश भी उन्हें बहुत ही सम्मान और आत्मीयता के साथ याद करता है
उन्हीं की याद में 15 सितम्बर कोइंजिनियर्स डे के रूप में बनाया जाता है
उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं
इंजीनियरिंग की दुनिया के चमत्कारों की बात जब मैं करता हूँ तब मुझे आज 2001 में गुज़रात में कच्छ में जो भयंकर भूकंप आया था तब की एक घटना याद आती है
उस समय मैं एक वॉलंटियर के रूप में वहाँ काम करता था तो मुझे एक गाँव में जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे 100 साल से भी अधिक आयु की एक माँ से मिलने का मौका मिला और वह मेरी तरफ देखकर के हमारा उपहास कर रही थी और वह कह रही थी देखो यह मेरा मकान है कच्छ में उसको भूंगा कहते हैं बोलीइस मेरे मकान ने 33 भूकंप देखे हैं
मैनें स्वयं ने 3 भूकंप देखे हैं
इसी घर में देखे हैं
लेकिन कहीं पर आपको कोई भी नुकसान नज़र नहीं आया
येघर हमारे पूर्वजों ने यहाँ की प्रकृति के अनुसार यहाँ के वातावरण के अनुसार बनाए थे और यह बात वह इतने गर्व से कह रही थी तो मुझे यही विचार आया कि सदियों पहले भी हमारे उस कालखंड के इंजीनियरों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कैसी रचनाएं की थी कि जिसके कारण जनसामान्य सुरक्षित रहता था
अब जब हम इंजिनियर्स डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए
स्थानस्थान पर workshopsकरने चाहिए
बदले हुए युग में हमनें किनकिन नई चीज़ों को सीखना होगा सिखाना होगा जोड़ना होगा आजकल डिसास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम हो गया है
प्राकृतिक आपदाओं से विश्व जूझ रहा है
ऐसे में स्ट्रक्चरल engineeringका नया रूप क्या हो उसके कोर्सेस क्या हों स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाएकंस्ट्रक्शन निर्माण इकोफ्रेंडली कैसे हो लोकल मटीरियल्स का वैल्यू एडिशन कर के कंस्ट्रक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए ज़ेरो वास्ते यह हमारी प्राथमिकता कैसे बने ऐसी अनेक बातें जब इंजिनियर्स डे मनाते हैं तो ज़रूर हमने सोचनी चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो उत्सवों का माहौल है और इसके साथ ही दीवाली की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं
मन की बात में मिलते रहेंगे मन की बातें करते रहेंगे और अपने मन से देश को आगे बढ़ाने में भी हम जुटते रहेंगे
इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुतबहुत शुभकामनाएँ
फिर मिलेंगे